और यहां पर एक लड़का भी बैठा हुआ है जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ है और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर खाने पीने की अच्छी सुविधा --

यहां पर आप देख रहे हैं ये एक फ्रेशर दुकान है खो जिसके पर बैनर लगे हुए हैं कोका कोले का और यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो सामान दे रहा है।

और आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसने वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और यहां पर यह पूजा करने के लिए आया हुआ है और यहां पर आप देख रहे हैं टेल पत्थर लगा हुआ है।

और ये रात का टाइम है और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ तारे भी दिखाई दे रही है और एक घर सा भी दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट जली हुई--

और यहाँ पर कंपनी का शूज मिलता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइटे लगी है कुछ वाइट कलर की हैं कुछ --

पीली कलर की है और ये नीचे देख रहे है यहां टैल पत्थर भी लगे हुए हैं और इसमें ए_सी भी लगे हुए हैं।

और उधर एक क्या बोलते हैं कि ओटा भी बना हुआ है जो जिस पर हरे रंग का कलर होआ हुआ है।

नीचे पत्थर लगा हुआ है और एक टैंक भी खड़ा हुआ है और एक पौधा भी लगा हुआ है जो काफी अच्छा ह--

और उधर आप देख रहे हैं कुछ छतरियां भी रखी हुई है और उधर आप देख रहे हैं पैनल लगा हुआ है जो काफी बड़ा--

हरे हरे गेट हैं उसके और यहां पर कपल भी आते हैं लड़कियां और लड़के भी आते हैं जो पूरा दिन इंजॉय करते हैं काफी मजा--

यहां पर आप देख रहे हैं यह फील्ड है यहां पर आपको कुछ लोग सुबह का टाइम घूमने भी आते हैं और शाम के टाइम भी घूमने के लिए आते हैं ये शाम का वक्त है यहां पर हरे भरे--

यहां पर आप साड़ी वगैरह मंगलसूत्र जो भी आप जो भी चाहो आप ले सकते हैं लेडीज से रिलेटेड सारा सामान मिल--